ये एक केक की दुकान है इसमें बहुत सारे केक रखे हुए हैं।

और उस के पीछे उस कुछ ऑरेंज कलर सा दिख रहा है एक बहोत बड़ा पेड़ दिख रहा है।

पुस्तक रखे हैं कुछ मोटे-मोटे हैं कुछ बड़े-बड़े पुस्तके रखी हैं और बहुत --

वाइट कलर के छत है उसकी अच्छी है ठीक-ठाक।

एक ए.सी. लगी हुई है बड़ी-बड़ी लाइट लगी हुई है और अब्दुल कलाम की --

यह एक ट्रक जैसा दिख रहा है ट्रक के --

यहाँ एक बहुत बड़ी चम्मच मे एक रेसिपी या डिश बनी हुई है।